इस तस्वीर में नदी है।

इस चित्र मे एक पानी की तस्वीर है जहा पे बहोत सारा पानी है।

ट्रैन जा रही है ट्रैन के पट्टो पे नीचे बहुत सारे पत्थर हैं ऊपर की और खुला आसमान हैं।

इस चित्र में जो है एक जिम की तस्वीर है।